ये बिल्डिंग का फोटो दिख रहा हैं जिसके अंदर सामने तीन गेट बने है गेट के अंदर से कुछ खिड़कियाँ दर दिखाई दे रही हैं ऊपर के फ्लोर पर कुछ रेलिंग दिखाई दे रही है सामने कुछ खिड़कियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है।

आइड साइड से चपटे पिल्लर और ऊपर के साइड गोल पिल्लर बने हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर ऊँची सी खिड़की दिखाई दे रहे है सामने एक फूल गमले में रखे दिखाई दे रहे है।

कुर्सियाँ रखी दिखाई दे रही हैं एक व्यक्ति बीच में खड़ा है जिसने सफ़ेद ड्रेस और गले में हरे कलर का गमछा पेहना हुआ दिखाई दे रहा है आस-पास कुछ कुर्सियाँ और रखी दिखाई दे रही हैं।

स्कूल या किसी मस्जिद के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे है उनके आगे में टेबल बनी दिखाई दे रही है वो टेबल के ऊपर बैठ के वो कॉपी - किताबे खोल के रखे दिखाई दे रहे है सामने की साइड में एक खिड़की दिखाई दे रही।

किसी मंदिर के गुम्बत दिखाई दे रहै है जिसके ऊपर लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर कुछ कलश लगे दिख रहै है कलश दिख रहै है उसके ऊपर भी लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है।

ऐसी है सैलून की फोटो दिखाई दे रहा है जिसमें एक महिला ने अपने बालो को खोल कर कर खुल्ले सिर में क्लिप लगाई क्लिप ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है उसने कुछ काले कलर का कपड़ा पहना हुआ दिखाई दे रहा है।